और यहां पर जे_सी_बी भी चल रही है मिट्टी बहुत रही है और--

तीन व्यक्ति अंदर है और दो व्यक्ति दो व्यक्ति बाहर है।

ईटों का फर्श लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी भगवान जी की तस्वीरें रखी हुई है।

इस इमेज में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यहां कुछ बच्चे हाथ बांधे हुए और कुछ बच्चे ऐसे ही खड़े हैं।

यह एक जागरण की तस्वीर है इसमें एक पंडित भी बैठे हुए हैं।

यह देखने में हा एक हॉस्पिटल के जैसा लग रहा है।

साइड में एक टी_वी भी है और एक औरत अंदर आने के लिए एंट्री कर रही है।

और मीटर के पास एक र रेड कलर का छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है।

ओ इसमें व्यक्ति भी बहुत सारे हैं।

एक जेंट्स कुछ आरती के प्रवचन कर रहे हैं।

साइड में बहुत सुंदर बड़े बड़े पेड़ भी है और--